ये सब बोल के लिखे हुआ है और ये पीछे जाहड़ा वो है सड़क है।

ये एक धाबा है या होटल है और इस पे बोर्ड है इस पे बोर्ड पर नाम है एफ_के चिकन --

कॉर्नर बोल के लिखे हुआ है और यहाँ पे टीन उन शेड तीन शेड का है ये --

और लाल कलर का टाट है और झाड़ा वगैरह भी है यहाँ पर एक धाबा है।

सब जा रहे हैं यहाँ पे सामने हाथों में बैगा है लोगों के ये एक बस अड्डा दिख रहा है बहुत बड़ा बस अड्डा दिख रहा है।

ये एक दुकान है ये एक स्टेशनरी है जहाँ पर बुक्स वगैरह मिलते हैं।

और इनके पास पानी की बोटलें भी दिख रही है और बैठे हुए सेठ दुकान के मालिक बैठे हुए हैं यहाँ पर --

ए फैसिलिटी ऐसा कुछ तो लिखे हुआ है बहुत प्यारा सा लोन है ये ओ यहाँ आके कटिंग वगैरह कराते हैं।

यहां पे आंखों का चेकअप कर रहा है डॉक्टर ये आंखों का दवाखाना दिख रहा और मिशनरीज भी है यहां पे बहुत--

मशीनस है और आइस चेक करने की मशीनस भी है।

ये फल ये अनानस है।

माइक फोन हेडफोन माइक माइक वगैरह लगे हुआ है वहां पर तीन कुर्सियां है तीन माइक है।

ये कोई ऐसे ही कोचिंग सेंटर वगैरह दिख रहा कोसा तो भी ये कोचिंग कोचिंग सेंटर है ये कोचिंग सेंटर है।

ये एक अलमारी बनाने का कारखाना दिख रहा अलमारियां बनाने का कारखाना दिख रहा है वहां सामने अलमारियां है।

बनाने का कारखाना है यह दो लोग काम कर रहे हैं कुर्सियां है वहां पर और उन लोगों का सामान भी रखे हुआ है काम करने का सामान भी रखे हुआ है।

साइड ये डिजाइन का है पीछे सोफा और वहां कुछ सामान भी रखे हुआ है।

ये कपड़ों की दुकान दिख रही कपड़ों की दुकान दिख रही है।

तीन पंखे लगे हुए हैं लोग भी ये कपड़े खरीद रहे हैं एनामोर बोल के कुछ लिखे हुआ है।

और ये झूमर के जैसा कुछ जो है लाइटा लगे हुए हैं यहां पे लाइटा भी लगे हुए कैमरे भी है दुकान में--

और डील्स इन ऑल हार्डवेयर आइटम्स पेंट सेनिटेरी वेयर एंड से कुछ लिखे हुआ इस पे--

ये एक घर है एक घर है बहुत बड़ा घर है ये नीचे दो सोफे रखे हुए है और एक टेबल रखे हुआ है सामने सीढ़ियों सीडयों के ऊपर--

और दरवाजा है लेफ्ट साइड में भी एक दरवाजा है एक घर है ये किसी का घर है ये घर है ।

ये मजे कर रहे हैं ये बहुत सारा मजे कर रहे हैं ये पानी में--

ये एक रेस्टोरेंट है रिसेप्शन रेस्टोरेंट कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ है इस पे एक ये एक रेस्टोरेंट है और एंट्री पे सामने झाड़ा है।

ये एक फंक्शन फंक्शन हॉल है ये फंक्शन हो रहा है यहां पर लोगोजन दे लेते हैं फोटो ले रहे और सामने खाने का टेबल वगैरह है।

और ये क क्या बोलते इसको खुला आसमान है अच्छा है ये तैरने का--

ये एक ज्वेलरी शॉप है सोने चांदी की दुकान है ये इंदिरावती ज्वेलर्स बोल के नाम लिखे हुआ है गाड़ी ठेरी हुई है सामने और इसके--

ट्रैन्स्फर जंक्शन एण्ड वयरिंग वो कुछ हैं जंक्शन एलेक इलेक्ट्रिक कुछ हैं वहाँ पे--

ये भी एक कॉलेज ही है और यहां पे फोटो फ्रेम में बैंकर कुछ लिखे हुआ है।

और यहां पे ये स्पेस पे इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है शजीए--

आने के लिए लोग आते हैं यहां पर और पीछे घरा भी है खुला आसमान है बहुत अच्छा दिख रहा है ये दिखने में तो--

सूरज घूमने का टाइम है ये सड़क पे और ये शादी खाने की--

बसाए खड़े हुए हैं यहां पर तीन चार बसा खड़े हुए हैं यहां पर--

गाड़ियों का बाजार दिख रहा है ये और यहां पर लिखे हुआ है बी कुछ बोट पे सामने विनायका कार बाजार बोलके लिखे हुआ है।

ये गार्डन नजर आ रहा है गार्डन दिख रहा है ये गार्डन के जैसा ही दिख रहा सामने वाचमन की कुर्सी है पूरे झाड़ा वगैरह है यहां पर--

इंडिया का तिरंगा भी है वहां पर और बहुत सारा बहुत सारे झाड़ा है।

क्लॉथ हाउस करके लिखे हुया हैं बी टू कालू की हटे ऐसा लिखे हुआ हैं।

ताला हाउस रौड अ बेन बेंगाल क्या तो भी ऐसा लिखे हुए हैं ये --

माता की मंदिर मूर्ती उतरी हुई है लोग जा रहे आ रहे और यहां पे गर्मी ठहरा हुआ है।

एक मंदिर दिख रहा मंदिर म्यूजियम ऐसा कुछ दिख रहा है ये क्योंकि माता की मूरत इसके अंदर है शेर के ऊपर बैठे हुए माता--

यहां पे दुकान है चाचा चिकन कॉर्नर क्या तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है चिकन फ्राई ग्रेवी चिकन चिल्ली चिकन लेमन चिकन ऐसा कुछ है फिश फ्राई --

बोर्ड पे लिखे हुए हैं फिश करी फिश फ्राय वैगहेरा ऐसा कुछ लिखे हुए हैं बोर्ड पे --

ओ ये बिल्डिंग के ऊपर है।

बाहर गाड़ियां भी है और झाड़ा वगैरह भी है यहां पे बहुत सारे झाड़ा भी है यहां पे--

यहां पे दावत हो रही ऐसा दिख रहा है कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा यहां पे जाड़ा है और डेकोरेशन करे है।

पूरा पर्दों से कपड़ों से सजाए सो है डेकोरेशन और क्या बोलते हैं सो--